तथा उसके ऊपर उसके फोर पैक दिख रहे है जो की उसके पेट के ऊपर बने हुये है |

ये इमेज एक बड़े सी चर्च की बताई जा रही है जोकी बड़े-बड़े गुबारों से भरा हुआ है तथा उसके छत पे गुब्बारे टंगे हुए है।

यहाँ इमेज मे हमे घर बताया जा रहा है जो कि ईट से बना हुआ है और ईट का घर ब्राउन कलर का नजर आ रहा है तथा वहाँ पे एक प्रवेशद्वार है।

रोड के ऊपर बहुत से लोग खड़े हुए हैं जोकी बस इंतेजार करते हुए नजर आ रहे हैं।

वहाँ पे कुछ छोटा सा हर्ट दिख रहा हैं तथा वहाँ पे जालियाँ भी लगी हुई हैं जो सफेद कलर की नजर आ रही हैं तथा वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जो बहुत बड़े व ऊंचे पूरे दिख रहे हैं।

था वह पे एक फव्वारा भी लगा हुआ हैं जिसके अंदर से पानी निकल रहा हैं उसके साइड में एक आदमी सफ़ेद कलर की शर्ट पहने खड़ा हैं।

यह इमेज हमे एक बड़ा सा जंगल दिखाया जा रहा हैं जिसके अंदर बहुत से हर्ट और झोंपड़े बने हुई हैं वहाँ झोपड़ियों के आस पास किराने के सामान मिलता हुआ दिख रहा हैं।

ओ मछलियों का रंग सफेद लाल नीला पीला दिख रहा है ओ मछलियाँ काले कलर के कपड़े के ऊपर मरी पड़ी हैं तथा खरीदी जा रही हैं।